कई लोग घूमने भी जा रहे हैं।

और कैफे में काम चल रहा है कैफे में--

जहाँ पर बहोत सारे गमले लगे हुए हैं।

बड़ी सुंदर दिख रही है यहां की लड़कियों ने--

दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रेस्टोरेंट हैं यहां पर--

गिट्टी रेती और बहोत से मजदूर हैं।